ए लोहा बिछाया गया है। पिलर खड़े दिखाइ दे रहे हैं और बोहोत से मजदूर मिस्त्री यहां पर काम कर रहे हैं।

बलफ़ भी दिख रहा है और शटर भी लगी हुई --

शॉप है जिसपे गोभी बैंगन और टमाटर आलू खीरा बोहत से सभी प्रकार की सब्जियां दिखाई दे रही हैं जो कि रखी हुई है।

एं तरीके से डांस कर रही बहुत ही सुंदर लग रहा है।

और ये ट्रेन खड़ी है बहोत लंबी चौड़ी ट्रेन है ये बहुत ही ई माल भरा हुआ है इसमें।

और आगे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे बाइके लाइन से खड़ी हो।

और पेड़-पौधे हरे-भरे बोहोत से पेड़ पौधे भी हैं।

कई इनके कई फ्लोर दिखाई दे रहे हैं। जो चार बिल्डिंग हैं। एक ब्लैक कलर की बिल्डिंग है और तीन भाइट --

एक नीले कलर का एक ऐलो कलर का है और एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दे रहा है जो ऐलो कलर के कपड़े पहने है।

यहां पर हमें एक बड़ा सा मकान दिख रहा है। मकान या मंदिर भी --

बहोत बड़ी बिल्डिंग है। कम से कम ये दस फ्लोर तक की बिल्डिंग है। होटल --

यहां पर हम देख रहे हैं एक मंदिर बना हुआ हैऔर सामने से हमको कुछ जाली दिख रही हैजो लोहे की रोड की जाली बनी हुई है|